लोग यहाँ पर गन्ने खाली--

ऊपर ए. सी. लगी हुई है।

ऊपर ए. सी. लगी हुई है।

और यहाँ पर ऐसा लग रहा है की निचे की फर्श गीला है।

जो सफ़ेद पत्थर की है।

ए टा घर मोटो नो दखा देयचे --

रिसीवर्स लगाये हुए है।

और इधर वाले पक्ष पे औरते बेठी हुई दिखाई दे रही है।

और इधर वाले पक्ष में औरते बैठी हुई दिखाई दे रही है।

और इधर वाले पक्ष में औरते बैठी हुई दिखाई दे रही है।

शाशकीय कन्या पॉलिटेक्निक जगदलपुर--

पीछे की दीवार पर भगत सिंह की फोटो टंगी हुई नज़र आ रही है।

पीछे की दिवार पर भगत सिंह की फोटो टंगी हुई नज़र आ रही है।

ऐसे लिखा हुआ है ऊपर के बोर्ड पर अंदर कुछ लोग जाते नज़र आ रहे है।

बायीं तरफ जाने के लिए --

सामने बड़े - बड़े पिलर भी दिखाई दे रहे है।